यहाँ पे पेड़ यहाँ पे पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये देखने --

में बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहें हैजो कलर में खड़े हुए हैं।

बेंच पर एक नीला कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँं नीचे टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। यह देखने में लग रहा है। यहाँं पर रंग-बिरंगे कागजों से कुछ बना हुआ है।

और बहुत सारे आदमी और महिलाएं दिखाई दे रही हैं। यहां पर कांच का गेट लगा हुआ है यहां पर अ म ग्रीन कलर की जाली लगी हुई है यहां पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुर्सियां रखी हुई हैं जो रेड कलर की हैं बाजू में खिड़की लगी हुई हैं | यह सीन लग रहा है।

पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं। कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। यहाॅं पास बोहोत सारी मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं। चैनल गेट दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं। लोहे का दिखाई दे रहा है यहां पर एक खंभा दिखाई --

में एक आदमी दिखाई दे रहा है गुलाबी कलर की शर्ट पहने हुए चश्मा लगाए हुए है यहाँ पर रोड़ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का है। यहाँ पर एक बाउंड्री दिखाई दे रही है।